यहां पर हमें बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई दे रहा है। छोटे बड़े कई प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं और इन पहाड़ों में पत्थरों में पेड़ है वो भी हमें दिखाई दे रहे है।

और हमें यहां बहुत से अम्म सफेद सफेद सा पानी भी गिरता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हमें एक कुर्सी दिखाई दे रही है और ये एक कोई दुकान है जिसमें हमें बहुत सारे बने हुए दिखाई दे रहे है।

एक पहाड़ एक पत्थर पे आद- एक आदमी भी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर हमें अंधेरा अंधेरा सा दिखाई दे रहा है शाम का समय है।